बडा ऊंचा पहाड़ है आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे इंसान सब रहते हैं ए पहाड़ उछले उउउउउउदर जायेगा तो यहाँपे इंसान लोग दब के मर जायेंगे इंसानो को कह देना की अट जाये यहाँ --